सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

सामने कुछ ड्रम रखे हुए हैं।

उन्होंने अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए है।

कमरे में ए_सी लगी हुई है।

प्रकार की टाइल्स दिख रही है।

कपड़े रेडीमेड नहीं दिख रहें हैं।

अलग अलग किसम की मछलियां दिख रही हैं।

हॉल पर पंखा नजर आ रहा है।

सामने नीली कलर की दीवाल है।

यहां पर एक ओवर ब्रिज दिख रहा है।

यह एक बिगड़ी हुई कार हैं।

टोल गेट के कांच पर धूल लगी हुई है।

सामने से सड़क दिख रही है।